इस गाड़ी में लड़के भी आए हुए हैं सभी पार्टी अटेंड करने के लिए।

एक ओटो लगी हुई है एक बैटिक वाला रिक्शा लगा हुआ है इसमें दो बन्दे है।